चित्र में एक गणेश जी की प्रतिमा दिखाई गई है ।

कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहे है।

रेलवे प्लैटफॉर्म दिखाया गया है।

> में गोडाउन दिखाई दे रहा है जिसमे खूब सारी बोरियाँ दिखाई दे रही है।

साइकिल दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे है पेड़ दिखाई दे रहे है।

चित्र में एक बड़ा सा बाँध दिखाई दे रहा है।

एक बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ अपना पैर दिखा रहा है जिसपे उसने टेप चिपका के रखा है एक घडी दखाई दे रही है।

प्लैटफॉर्म दिख रहा है।

तीनीया दिखाई दे रही है घास बिजली के वायर और आसमान भी दिख रहे है।

मटके और दिये दिखाई दे रहे है।

चित्र में बड़ी सी सफ़ेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है ग्राउंड में कुछ गाड़िया खड़ी दिख रही है।

नेट दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है ऑडिटोरियम दिखाई दे रहा है ग्राउंड दिख रहा है।

चित्र मै एक छोटी सी किराने कि दुकान कि गुमटी दिखाई गई है।

चित्र में आर्ज वाला एक गेट दिखाया गया है एक काँच का गेट दिखाया गया है।

बड़ा पटा रखा हुआ दिख रहा है एक लकड़ी कि पुरानी अलमारी दिखाई दे रही हैं।